कपड़ों वाली कपड़े पड़े है और यहां दो तीन लोग खड़े है।

इस तस्वीर में मेरे को कुछ लड़के दिखाई दे रहे--

यहां सामने इस तस्वीर मे मेरे को--

किसी पत्थर के पार वगैरा है या फिर बादल जैसे कुछ दिख रहे--

इस तस्वीर में मेरे को सामने कुछ डिजाइन दिख रही है।